इस चित्र में एक बालिका अपने नेत्र का प्रदर्शन कर रही है।

एक मालीका अपनी शिक्षिका द्वारा पुरुस्कार प्राप्त कर रही हैं।

पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ चट्टानों से कुछ पानी बेह रहा है।

इस चित्र में पीछे एक बहोत बड़ा पहाड़ हैं ।

नीले रंग की साड़ी खोल कर दिखाई गई है।

यह एक जेब का फोटो है।

यहाँ एक पुस्तकालय का चित्र है जहाँ पर --

यह ऐसी सी. एफ. सी. बैंक की गोपालगंज नगर की शाखा है।

और रंग बिरंगे दो पक्षी बैठे हैं।

वहाँ एक अंदर काट खड़ा है और गेट के बहार एक आदमी अपनी बाइक लेकर खड़ा है।